पालकी विनि के आगे एक कैफ़े है कैफ़े का नाम बरिस्ता है।

ये एक कैफ़े दिख रहा है कैफ़े के सामने गाइद्रेंस काच का है।

सफेद कलर का टी -शर्ट और काली पैंट पहना है।

बगीचे के बिच में अलग अलग किस्म के फुल के पोधे लगे हुए है।

चित्र में एक इमारत के सामने कई लोग खड़े है वे के बिच--

सामने मंजू की बॉउंड्री है जो सफ़ेद रंग की है।

पब्लिक ऑटो रिक्शा है जो पीली और काली कलर का है।

इस चित्र में एक कमर्शियल बिल्डिंग दिखाई गई है।

गेट के सामने बाजार लगा हुआ है बाजार के वो लोग जा रहे है और आ रहे है ।

एक पुस्तकालय का बुक की दुकान दिखाई गई है।

इस बिल्डिंग में एक होटल है जिसका नाम होटल वेलकम --

इस चित्र में एक दुकान का एंट्रेंस बताया गया --

चित्र में एक खूबसूरत तलाब दिखाई दे रहा है तलाब के किनारे काफी हरे भरे पेड़ लगे हुए है।

वो वो गोल दायरा बना कर खड़े हुए है इसमें ज्यादा तर नौजवान लड़के खड़े है।

हॉल की सीलिंग में पंखे लगे हुए हैं।

काफी खूबसूरत फूल दिखाई दे रहे हैं।

बछड़े के सामने चारा रखा हुआ है बछड़ा चारा खाने वाला है।

सामने पलंग नज़र आ रहा है जिस पर दो तकिये रखे हुए है।

इसके सामने सात आठ मोटरसाइकिल खड़ी हुई है।

इसमें एक अंदल आदमी खड़ा हुआ है जो अन्दर से पेसे निकल रहा है।

इस चित्र के ऊप पर लिखा हुआ है भारतीयों डाक इंडिया पोस्ट सामने एक पोस्ट बोक्स भी है जिसमे --

सामने एक सफेद बोर्ड है जिस पर कुछ लिखा हुआ है।

इन की रिबाज इनकी रिबाज काफी रंग बी रंगी है।

किराने के दूकान पर काफी कुछ सामान लटका हुआ है।

और एक लाल रंग का सोफा भी है।

रेस्टोरेंट के अंदर काफी टेबल लगे हुए हैं जिसमें काफी लोग बैठे हैं।

सामने एक काउंटर है काउंटर पर पिले कलर की टी शर्ट पहन कर एक आदमी खड़ा हुआ है।

इस चित्र में एक इवेंट की एंट्री बताई गई है।

यह एक झील की चित्र है झील में काफी पानी है झील में कमल के --

बिल्डिंग के सामने खुला मैदान है जिस में काफी पेड़ लगे है।

प्लेटफॉर्म भी दिख रहा है जिस पर बहुत कम लोग हैं।

मेरी दुकान का नाम मानव कार एसेसरीज --

एक आदमी डाकघर में जा रहा है।

इसके सामने कुछ कार और कुछ मोटरसाइकिल खड़ी हुई हैं।

एक आदमी अपनी मोटर बाइक पर बैठा हुआ है।

एक झंडा फैलाने के लिए पोल लगा हुआ--

सामने कुछ टेबल और कुर्सियां रखी है जिस पर कोई नहीं बैठा है।

इस चत-चित्र में एक आदमी बैंक के किनारे खड़ा है।

इस चित्र में एक नर्सरी दिखाई दे रही है।